कुछ घर कच्चे दिखाई दे रहे है छत और घर के ऊपर कपड़े सुख रहे है।

ये मुझे स्कूल लग रहा है जिसकी दीवार ऑरेंज रंग की है दो बालकानी है खिड़कियाँ लगी हुई है खिड़कियों में जाली लगी हुई है।

येलो और नारंगी का रंग का है ग्रीन का कलर पेड़ है वाइट कलर की दिवाल है।

यहा कुछ लड़किया डांस स्टेप करती नजर आ रही है। पीछे इन के रेड --

किसी टमाटर पे यहां दाग लगे हुए हैं कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं ये सारे टमाटर एक बकेट में रखे हैं कुछ टमाटर बड़े हैं कुछ टमाटर देसी हैं।